एक सलून जैसा लगता है।

किसी पब्लिक प्लेस या किसी कंपनी का दृश्य है जिसमें एक गलियारा है जिसमें काफी लोगों की भीड़ है।

सामने एक बोलेरो खड़ी हुई है एवं एक व्यक्ति उसमें कुछ देख रहा है।

ये एक पहाड़ का विहंगम द्रश्य है जोकि ऊंचाई से लिया गया है।

यही सामने खड़े हुए हैं जो कि झील को देखते हैं।

एक खेत या कोई मैदान है।

किसी विद्धालय अथवा कॉलेज का गलियारा है।

ऊँची लाइट है।

आसमान में बादल छाए हुए हैं।